दुकानों के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है क्रापसन और हैवेल्स ।

उन दुकान के अंदर एक आदमी सिलाई मशीन पे काम कर रहा है।

यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दुकान दिख रहा है यहां पर दो लोग आए हुए हैं और बाहर एक स्कूटी बाइक और साइकिल रखा गया है।

लोग वहां पर अपने परिवार के साथ बैठकर खा पी रहे हैं।

सामने एक रोड है और वहां एक साइड में पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है आलिया कैफे तेजू नाला डिस्ट्रिक लोहित ए_पी सेवन नाइन टू जीरो जीरो वन ।

कुछ लोग खड़े होकर खाना परोसते हुए दिखाई दे रहे हैं।

काफी घास भूसे रखे हुए हैं यहां पर और पेड़ पौधे भी है।

यह जगह काफी सजावटी और आरामदायक दिख रही है।

आगे एक गेट दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है इकोबैंड ।

इस पर ढेर सारी खूबसूरत फुल भी रखे हुए है।

पूरी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है।

अंदर कुछ हिरण दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक महिला के कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है जहां एक पुतला पर सतरंगी रंग की फूलो वाली ड्रेस पहनाई गई है।

काफी बड़े बड़े पेड़ हैं यहां पर हरे रंग का और काफी ज्यादा जंगल यहां पर दिख रहा है।

सामने पांच कुर्सियां लगी गई है जो की रंग बिरंगी है।

सड़क गीली है जिससे ऐसा लगता है जैसे बारिश हुई है।

यहां रंग बिरंगी ढेर सारी लाइटें लगी हुई है।

इसका नाम वहां पर लिखा गया है नफीसा जहान।

डोनेशन बॉक्स है और आगे बुद्ध भगवान की मूर्ति रखी गई है और यहां पर घड़ी भी लगी हुई है।

फ्लोर ब्राउन रंग का है और काफी लोग यहां है एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं।

यहां हरा हरा रंग का दिख रहा है और कुछ फ्लोर सफेद रंग का दिख रहा है।